यह एक मार्केट‌ है जिसमें बहुत सारी शॉप्स हैं।

यहां पर जागरण हो रहा है कई औरतें आई हुई है।

यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बहुत ज्यादा बड़ी।

पुल बना हुआ है जिसमें बाथिंग पुल है ये।

यह एक क्लीनिक है यहां पे तीन आदमी‌‌ हैं।

एक डे टेबल पड़ी हुई डेंटल हॉस्पिट अ रूम है ये--

यहां पर एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें येलो पेंट है कहीं कहीं पेंट नहीं है येलो पेंट भी कहीं कहीं से--

घासपूस हो रही है घासपूस में बिल्कुल बिल्डिंग से टच हो रही है।

और ऐसे लग रहा है मंदिर नम् मोमडन्स का मंदिर हो।

ब्लू ब्लैक कलर के बैलूंस लगे हैं शूज लगे हैं शूज भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं।

कार खड़ी है कार के अंदर कोई नहीं है।

टी-शर्ट पहनी है एक ने ब्लैक तो एक ने ग्रीन --

बहोत सारे दूध लग रही है तो दिखने में छोटी है एक हंस रहा है बहोत ज्यादा स्माइल के साथ--

यह एक रेस्टोरेंट है यहां पर एक लड़की और एक लड़का बैठा हुआ है।

लाइटें येलो कलर की है वो लोग डिनर के लिए वेट कर रही हैं।

यहां पर बहुत सारी ऑटो खड़ी हैं कुछ आदमी--

यहां पर श्री राजेश्वरी बुक है।

लाइटें जली हुई है येलो ग्रीन रेड वाइट बहुत टाइप की हैं।

तीन चार आदमी हैं उन्होंने कैप पहन रखा है एक बस खड़ी है उसमें जय माता दी लिखा है।

उसने रेड कलर का वो जैकेट और नीचे पैंट पहन रखा है।

एक आदमी ने दो आदमियों ने वाइट शर्ट पहनी है‌दो ने ब्लैक पहनी हैएक ने पिंक पहनी--

यहां थोड़ा आगे बढ़के ट्रक है वो कारें खड़ी हैं ट्रक ट्रिपाल से ढका हुआ है।

कपड़े पहने हुए हैं सब बच्चे मस्ती ले रहे हैं।

ये डीव कप की शॉप है इसमें डिजाइन अलग अलग डिजाइन के अलग अलग कप रखे हुए हैं--

मिट्टी हो रही है ब्राउन ब्राउन कलर से पूरा मिट्टी से लटका--